और ब्राउन कलर का भेड़ है और बत्ती भी जल रहा है जगमग जगमग और --

टेबल रखा हुआ है कुर्सी टेबल सब लग रहा है।

अगल-बगल गेट भी लगा हुआ है लोहे का।

एक साइड दो कुर्सी है एक साइड दो स्टूल खड़ी है एक कुर्सी--

है एक साइड में एक साइड में टी_वी भी है और बेंच पर सारा सामान रखा हुआ है।

सामने बाउंड्री है बीच में उसारी बना हुआ है दोनों तरफ से पाया और रेलिंग है बाहर जाने का भी रास्ता--

सामने उम मकान है मकान को डेकोरेशन हुआ है लग रहा है कि शादी हो रही है उस तरह की डेकोरेशन है अन्दर--

पर्दे और झूमर से डेकोरेशन किया गया है और बत्ती भी जल रहा है।

और कुर्सी टेबल सब कुछ लगा हुआ है बीच में।

सामने मोर और मछली का पोस्टर लगा हुआ है ब्राउन कलर का छे लोग--

आदमी का पोस्टर लगा हुआ है नीचे बैठे हैं सब लोग।

यह इस कॉलेज है कॉलेज में सामने मास्टर जी पढ़ा रहे हैं पोस्टर पर और स्टूडेंट्स बहुत सारे बैठे हैं।

सामने से तीन लोग दिख रहे हैं और पोस्टर है बत्ती भी जल रहा है मास्टर जी पढ़ा भी रहे हैं।

ए पर से ऊपर घोड़े रख के और एक जेन्स खड़ा है एपर से ऊपर हाथ रख के।

और पत्थर छोटा-छोटा टुकड़ा भी दिख रहा हैं।

कुछ है जो कि छोटा छोटा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज है बाकी बहोत सुंदर दिख रहे डोकरेसन मे।

सामने बेंच लगा हुआ है शॉप लग रहा है और--

एक साइड सामने डेकोरेशन है सारा सामान का।

सामने एक मकान है।

यह मॉल है मॉल के सामने--

प्लेटफॉर्म है ट्रेनी है ब्लू कलर का।

चार- पांच दरवाजा दिख रहा है और दोनों साइड से पेड़ हैं।

और बहुत बड़ा पेड़ है फर्स पूरा साफ है।

व्हाईट पट्टी खींचा हुआ है और पूरी रोड एकदम खाली है सन्नाटा।

छह लोग नृत्य कर रही हैं और रथ पर--

ड्रेस पेहनी हुई हैं मुकुट भी पेहनी है नाक और नथिया में टिका का भी पेहनी हैं और नीचे सब लोग कर रहे हैं नीचे फर्श ग्रीन कलर का है।

चार लोग हैं चार लोग में दो खड़े हैं।

दो बैठे हैं एक लेडीज है लेडीज हाथ में कप लिए हैं।

हिमालया का पोस्टर लगा हुआ है और सामने एक कार खड़ी है और--

लगा हुआ है पिक्चर में क्या है ये दिखाई नहीं दे रहे बहुत सारे लोग बैठे हैं।

और व्हाईट कलर का टी_ वी_ पर दिख रहा है।

पास ब्लू ब्लू कलर की चेयर लगी हुई है साइड में वो--

उसमें भी छोड़ा सा पत्ती लगी हुई है हरा हरा।

देश मंत्री जो भी हों जवाहरलाल नेहरू सबका दिख रहा है थोड़ा-थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है।

और यलो कलर का पेंटिंग हुआ है बाहर--

पाया भी उसका पिलर भी बहुत पिंक कलर का है।

और ब्लैक कलर का कुछ साइड में भी दिख रहा है।

यह जंगल है जंगल में बहुत सारा पेड़ और पौधा है बीच में नदी है।

और साइड में मछली रखा है क्या दो तीन पीस --

गोदाम की तरह लग रहा है सोफा भी रखा हुआ है ब्लैक कलर का बहुत सारा सामान भी दिख रहा है।

साफ दिख नहीं रहा हैं बट गेट नीला रंग का लगा हुआ हैं टिने का और बत्ती भी अंदर जल रहा हैं।

और लाल पीला नीला ये सब कुछ सब कुछ दिख रहा है।

अंदर से पुल जैसा दिख रहा है।

ऊपर पंखा है लाइट जल रहे है सामने--

यह कोई स्कूल है उसका गेट है गेट पर पोस्टर लगा हुआ है गेट बंद है गेट अच्छा वाला गेट है।

और उसपे के ऊपर बत्ती भी है।

व्हाईट कलर का डेकोरेशन लगा हुआ है छाया हुआ है और--

सामने मकान है मकान के अंदर बहुत लोग खड़े हैं छोटा बच्चा भी है जेंट्स और लेडिस सब लोग हैं।

और अंदर लाइट भी जल रहा है --

सामने टेबल कुर्सी लग रहा है स्टूल भी लगा हुआ है किसी चीज का पोस्टर भी लगा हुआ है।

और वहाँ लाइट भी जल रही है।